यह एक बहुत बड़ा भोजन भंडार है और बहुत बड़ा मकान है ।

दो ए_सी लगी हुई है और लकड़ी का गेट है।

और ए_टी_एम में बहुत सारी लाइट लगी हुई है और ल शीशे का गेट है।

यह एक भोजन है भोजन थाली में है।

यह एक बहुत बड़ा घर है घर के नीचे बहुत ज्यादा दुकान हैं।

आदमी जींस और शर्ट पहना हुआ है।

और यहां बाइक भी है और यहां पर कार भी है और बहुत सारे पेड़ पौधे भी है।

यह यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी में अंदर लाइट है।

बहुत सारे पेड़ पौधे हैं अ बहुत ज्यादा पानी है।

रंग बिरंगी प्लाक्सित हैं अ फुल लगी हुई है।

टेबुल है ये बहुत सारे टूल है।

बहुत सारे कुर्सियां है इधर फुल रखा हुआ है।

लोहे का छड़ उठाया गया है और इधर पानी भी है।

लाल और चरक पेंट की गई है।

ईटा है और बहुत सारे बालू है।

और बहुत सारे तार हैं और बहुत सारे पेड़ पौधें हैं।

लोहे का दरवाजा है और एक हॉल है हॉल में बहुत सारे आदमीया बैठे हुए हैं।

बहुत सारे गाड़ी है पोस्टर में लिखी हुई है।

जमीन में घासें जामी हुई है और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और बहुत सारे तार हैं।

यह एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है फैक्ट्री में बहुत सारे आदमियां काम कर रहे हैं।

सभी महिलाये गिफ्ट दे रही हैं और सभी महिलाएं साड़ी पहनी हुई है।

फुल लगा हुआ है अब पेड़ पौधे हैं।